जोनकी आह नेवी ब्लू कलर का टी-शर्ट पहले लईकवा।

और ओकरे बगल में बोहोत बड़ा सा बिल्डिंग है बिल्डिंगइयाँ में छः सौ सत्तर का ऑफर होम लोन का देत ह।